इसका दरवाजा भी पूरा का पूरा शिशा से बना हुआ है।

यहां पे फेंसिंग भी दिख रहा है जोकि पूरा इटा से बना हुआ है।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

यहां ग्राउंड में बहुत सारा ग्रासेस भी है।

यहां पर बहोत सारा सामान बेचा जा रहा है।

शीशा के शेल्फ में वॉइन भी रखा गया है यहां पर लाइट्स भी है जोकि जल रहा--

और मुझे कुछ चेयर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरा पूरा लकड़ी से बना हुआ है।

यहां पे एक रेड कलर फायर एक्टिंग्वीशर भी दिख रहा है।

और उसके ऊपर बहुत सारा पानी बॉटल भी है।

वो सब खिड़की पूरा का पूरा लोहा से बना हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में दो बसेस दिखाई दे रहे हैं।

मुझे बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं जिनका चेहरा भी क्लियर नहीं है।

यहां पे बहुत सारा शेल्फ है जो कि पूरा पूरा लकड़ी का बना हुआ है वो भी व्हाइट कलर का और उसका उपर बहुत सारा सामान रखा गया है।

ग्राउंड में मैट बिछाया गया है जो की ब्लू और वाइट कलर का है।

जिसका ऊपर एक बैनर है फ्रेंड्स कार डेकोरेशन और बहुत कुछ लिखा हुआ है।

और मुझे दो लोग भी दिख रहे हैं जिनका चेहरा भी क्लियर नहीं है।

इसका वॉच भी व्हाइट कलर का है यहां पर मुझे सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिख रहा है जो कि व्हाइट कलर का है।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो कि पूरा पूरा टीना और लोहा से बना है।

और कुछ कार खराब भी हो चुका है यहां मुझे लाइट्स भी दिख रहा है।

इसके आगे मुझे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जिसने येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है और उसका चेहरा भी क्लियर नहीं है।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

जोकी थोड़ा ग्रे और वाइट कलर का है।

मुझे यहां पर कूलर्स भी दिखाई दे रहा है और ढेर सारे वायर भी हैं।

यहां पे मुझे बहुत सारा व्हाइट कलर का पाइप्स भी दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग भी दिख रहा है जो की येलो और रेड कलर का है और उसका बाहर में एक इंडिया फ्लैग है।

मुझे इस तस्वीर में दो बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं।

वहां का सीलिंग हो रहा है जहां पर मुझे बहुत सारे शेल्फ भी दिखाई दे रहा है जो की पूरा पूरा लकड़ी से बना हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।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

मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे है।

यहां पे बहुत सारा लाइट्स है जो कि जल रहा है।

यहां पर मुझे एक फैन भी दिख रहा हैं जो कि ब्लैक कलर का है यहां पर टेबल और चेयर्स भी हैं।

लकड़ी से बनाया हुआ है और उसे लाइट से सजाया गया है।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

जोकि पूरा पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है।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

जो कि पूरा पूरा लकड़ी से का बना हुआ है उसका छत के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है।

यहां पर मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे मुझे शेल्व्स भी दिख रहा है जो कि पूरा का पूरा शीशा से बना हुआ है और उसके ऊपर बहुत सा सामान रखा गया है जैसे पानी बॉटल और जूस ।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

यहां पर बहुत सारा चेयर्स भी है जो कि पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है।

और उसका खिड़की भी पूरा ऊपर शीशा और लकड़ी से बना हुआ है।

यहां पे एक तालाब भी है जहां पर मुझे दो बोट्स दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रहे है जोकि अलग अलग कलर के है।